और यहां पर बहुत सारे आदमी है और ये किसी मार्केट वगैरा की ये फोटो है जहां पर मूर्ति भसान होने जा रहा है।

यह एक बड़ा सा कोई विद्यालय या कॉलेज लग रहा है जिसमें की लिखा हुआ है बिहार कृषि विद्यालय जहाँ ये बिहार में है और शायद ये पर भागलपुर में पड़ता है ये।